बहोत सारा कुरकुरे चिपस टंगे हुए हैं।

यहां पानी सा भरा है दो तीन नाव खड़ी हैं।

और बहोत बड़ा पारक दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे ट्रैक्टर नए नए खड़े हैं यह ट्रैक्टर --

और बोहोत सारा सामान इस दुकान में--